यह सूट बेचता हुआ नज़र आ रहा है दुकान के अंदर--

यह एक नाँव के ऊपर एक हस्बैंड और वाइफ खड़ी हुई है ये नाव के चोटी के ऊपर खड़ी है।

पेड़ लगाते हुए नज़र आ रही है मास्टर भी है और अधिक बच्चे भी है।

केयर बा एक्सप्रेस के नाम से इस रेस्टुरेंट के डिलीवरी से की जाती है यह एक--

ये कइये बजे जाती है।

टिन लगा रखे है टिन के अंदर--